जो सफेद कलर पीली कलर और कुछ डिजाइन दर उसपे डिजाईन कराया हुआ है।

जैसा की मुझे नजर आ रहा है ये खूबसूरत-सा पार्क दिख रहा है जिसमे कहीं रेस्टोरेंट भी दिख रहा है।

जैसा की मैं देख पा रहा हूँ ये एक हलवाई वाले की दुकान दिख रही है जिसमें कुछ मिठाइयाँ रखी हुई हैं।